आसपास हमे पर्दे दिखाई दे रहे है स्पीकर दिखाई दे रहे है यहा पे ऊपर छत पे ताल्ले दिखाई दे रही है रौशनी आते दिखाई दे रही है दीवारों के बीच।

बेनर दिखाई दे रहे है यहा पे हमे पंखा दिखाई दे रहा है यहा पे हमे ऐसी दिखाई दे रहा यहा पे हमे प्रोजेकटेर दिखाई दे रहा है यहा पे हमे दरवाजा दिखाई दे रहा है यहा पे हमे अलिवेटेर दिखाई दे रहा--

हम देख सकते है यहां पर हमे एक थीअटर रूम दिखाई दे रहा है जिसके बाहर हमे लाल रंग की कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।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

इस तस्वीर में हम देख सकते है यहाँ पर हमें नीचे का फ़र्श दिखाई दे रहा है जो की पीला और काला रंग का ही दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे हमें खिड़की और दरवाजे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे हमें कांच की बहुत बड़ी दीवार दिखाई दे रही है खुला आसमान दिखाई दे रहा है लैम्प लाइट दिखाई दे रहा है बिल्डिंग के बाहर एक आदमी मास्क लगाए खड़ा --